पेड़- पौधे अगल -बगल दिख रहे है पीछे आसमान दिखाई दे रहा है नीला आसमान है इसमें सफ़ेद बादल छाए हुए हैं काफी अच्छा दृश्य है।

यहाँ पर काफी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये सामने बाउंड्री है बाउंड्री में गेट है गेट खुला हुआ है और गेट के बगल में बाउंड्री के ऊपर ये काफी बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है मोठे मोठे अक्षरों में।

यहाँ पर लोगों की काफी सारी भीड़ इकट्ठा है बड़ा सा ग्राउन्ड है जिसमें कुछ छाता लिए रखे है कुछ--

आटो और जिसमें कुछ महिला कुछ पुरुष है। इधर उधर चहल पहल हो रही है। पीछे आसमान दिखाई दे रहा है। सफ़ेद बादल छाए हुए है।